बोहोत सारे पेड़ -पौधे चारों साइड दिखाई दे रहे हैं आपको पानी यहां पे दिखाई दे रहा है सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है।

हेलो गाइस जैसा कि आप यहाॅं पे देख सकते हैं यहाॅं पे बोहोत ही खूबसूरत सा समुद्र बना हुआ है चारों साइड आपको बोहोत सारे लोग खड़े हुए --

आपको पेड़ पौधे चारो साइड दिखाई दे रहे हैं आपको घर दिखाई दे रहे हैं आपको लोग दिखाई दे रहे हैं।

गाइज़ जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे आपको जिम दिखाई दे रहा है। बोहोत सारी एक्सेर्साइज़ करने के --